एक लंबी सड़के हैं यहां पर और एक --

ओर इंतेजार कर रह हैं फंगक्शन स्टार्ट कब होगा।

पीछे मे बोहोत सारे पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं बड़े-बड़े।

माच बच्चे बेठे हुए हैं। पाँच बच्चे --

और उसके ऊपर बोहोत सारे छोटे-छोटे हरे-भरे विरक्ष भी हैं।

पेंट बना करके कुछ लोग बैठे हुए हैं।

और यहाँ पर ऑल टाइप ऑफ फेब्रिक आर अवैलेबले है। स्पेसलिस्ट इन एम्ब्रॉइडरी नेट --

बोरोकिड सिल्क इत्यादि साड़ियाँ मिलती है।

जैसे की हेंडवॉश है। मेगी है। टूथपेस्ट है। ग्रीन टी है।

अभी रात का समय है इसलिए मंदिर को बंद कर दिया गया है।

और दो लड़का यहाँ पर बैठ करके आपस मे बात कर रहे हैं।

फूलमाला से शिवलिंग को सजा करके आकर्षित बनाया गया है।

घास पर छत से एक बोहोत ही बड़ा मैदान दिखाई पड़ रहा है।

सारे लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं।